पे टेबल दिखाई दे रहें हैं और यहाँ पे ब्लू कलर का कपड़ा भी डला--

इसका कलर वाइट है यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं अच्छा तस्वीर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक स्टूल भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे खंभे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे बिजली के तार भी दिखाई ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही--

दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे समान रखा हुआ है और यहाँ पे नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है --